और बहुत मेहनत से इसको बहुत पैसा खर्चा कर के बनाया गया है जो की बहुत दूर-दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं।

बहुत सुन्दर-सा फिगर दिखाया गया है जोकि दिखने में काफ़ी सुन्दर है और मस्त है। यह नियो स्टेडर्स स्टैन्ड्रस ड्राई क्लीसन कपड़ा मिलता है यहाँ पे ।